ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर किसी थिएटर की हैं जहा पर ये जन गण मन् हो रहा हैं।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

और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये किसी मशीन से इस कार के स्क्रू या फिर पेंच टाइट या ढ़ीले कर रहा है लेकिन ये कुछ ना कुछ काम इस कार में --

और यहाँ पर एक गांधी मूर्ति या फिर अंबेडकर की मूर्ति है जो कि --

जैसा कि यहाँ पर दिखाई तो हमे पाँच ही दे रहे हैं जो कि दो उधर तीन उधर हैं।

नर्सिंग होम है जहां के अल्ट्रा साउंड सेंटर और बहुत सारा कुछ भी है।

ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर मे हम देख रहे हैं की एक प्रथमा बैंक हैं और यहाँ पर जोकि इस बैंक का जो नाम हैं।

एक नीचे एक पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम भी है और यहां पर दो बैंक है एक पी.एन.बी और एक पी.बी ।

ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं तस्वीर में हम देख रहे हैं कि ये एक मॉल है या फिर कुछ और। यहाँ पर बोहोत सारा समान हैं। बोहोत सारे लोवर टी-शर्ट और यहाँ पर जर्सी जैकिट सब सामान हैं। टिफ़िन डिब्बे लंचबॉक्स जो होते हैं वो भी हैं और --